ये भी एक वाटर पार्क का सीन है जिसमें की दिखाया जा रहा है की लोग यहाँ से स्लिप करने वाले जगह से कैसे मस्ती लेते है दोठो स्लिप करने का जगह दिखाई दे रहा है और एक बच्चा तैयारी एक बच्चा और एक आदमी तैयारी कर रहा है स्लिप होने के लिए।

जो बहुत बड़े-बड़े हिमालय बनाए गए है बना हुआ है।